अ गेंदे के फूल से सजावट कर रखी है और ऊपर पीले फूल से और सफ़ेद फूल से और पतियाँ हैं और इसके अलावा --

नीचे कच्चा हो रहा है कुछ पत्थर ओन है खुला आसमान है ऊपर सामने डगाल ओन् हे लटकी हुई है।

इसमें फूल ओन है सफ़ेद फूल पर्पल फूल लाल फूल और --

वो लाल कलर का है और यूनियन बैंक जो है वो सफ़ेद शब्दो में एक व्यक्ति है जो खड़ा हुआ है जिसने सफ़ेद शर्ट पहन रखी है।

हमारे सामने टेबल है जिसमें सिस्टम रखा हुआ है कीबोर्ड रखा हुआ है माउस रखा हुआ है पेपर रखा हुआ है एक पेन रखा हुआ है ये स्टेप्लर है।

उसके अलावा कुछ तार हैं सामने।

और कुछ सीमेंट के गोल-गोल बने हुए है दिवाले है।

मिकी माउस और कार्टून बने हुए है।

पेड़ है आसमान है कुछ व्यक्ति है जो खड़े हैं कुछ व्यक्ति अंदर की साइड जा ड़े हैं।

हमारे सामने एक गाय है जो काली कलर की है उसके पास में एक और गाय खड़ी है उसके अलावा |

ऐ कच्चा है और ओ गाइ है जिसके गले में ब्लू कलर की रस् --

एक व्यक्ति है जिसने काला कलर का टी-शर्ट पहना --

सामने एक लड़की है जिसने साड़ी पहेन रखी है सफ़ेद और लाल ब्लाउज है और ऊपर मुकुट लगा रखा है।

पर हमारे सामने मेला लगा हुआ है जिसमे कुछ व्यक्ति और महिलायें खड़े है।

दो व्यक्ति खड़े हैं जिसने ब्लू कलर की जीन्स और एक ने क्रीम कलर की जीन्स पहन रखी है और जूते पहन रखे हैं।

और गाछ में तुलसा की --

हमारे सामने एक इ रिक्शा है जो लाल कलर के हैं जिस पे पीले कलर के --

उसके अलावा खुला आसमान है आने जाने --

सामने एक सफ़ेद कलर का मस्जिद है जिसमें --

में एक झरना है जिसमे नीचे पानी है एक आदमी है जो अ खड़ा हुआ है उसके अलावा --

खिड़कियाँ हैं कुछ बैनर लगे हुए हैं जिसमें एक बैनर यूको बैंक का है जो पीला कलर का है।